यह एक बड़ा सा घर है जो सफेद रग की है और बगल मे जो घर है भूरे रग की है ओर नीले रग की है .

और बहोत सारे पेड़ पोदहे लगाए गए जो हरे रंग की पत्तियां है एक फर्श है जो हरे भरे है और सामने एक बिल्डिंग जो पीले रंग की ओर लाल रंग की है ।